तो ये मुझे जो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का घर है। तीन खिड़की लगी हुई है और एक दरवाजा लगा हुआ है । नीचे हरा कलर का चाद्दर बिछा हुआ है और ये इसाई लोगो का क्हाँ पे क्रॉस की साइन लगी हुई है ।